ग्राहक को खोजने में दिक्कत नहीं होगा बहुत अच्छा कपड़ा का दुकान है यहाँ पक्के का घर है दिखने में अच्छा लग रहा है।

है इसमें बहुत सारा फल है केला है काजू है।

का पानी फ्रेश नहीं है उसके अंदर जलकुंभी जम गया है ऊपर आसमान दिख रहा है आसमान नीले कलर का बैगनी कलर का उजले कलर का दिख रहा है ।

चारों तरफ पेड़-पौधे है हरे-भरे है छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए है भगवान बुद्ध के पैर के नीचे।

दिखने में अच्छा लग रहा है घर भी बहुत सुंदर-सुंदर बना हुआ है कलर किया हुआ है नीचे बहुत भीड़ है एक आदमी है मोबाइल से फोटो खींच रहा है ।

बहुत सारा गाड़ी खड़ी है कार है ज्यादातर इसमें वाइट कलर के कार ज्यादातर है ब्लैक कलर का भी है।